यह एक कबर्ड का दृश्य जो की लकड़ी का है और उपर में शीशा लगाया गया है।

जिस पर दो तीन लोग भी बैठे हुए हैं।

यह एक पहाड़ी एरिया का दृश्य है यहां पर ढेर सारा पहाड़ है।

कुछ पत्थल ब्लैक कलर के हैं और कुछ पत्थल वाइट और कुछ येल्लो --

यह एक बहुत बड़ा ही ग्राउंड का दृश्य है इस ग्राउंड के चारों तरफ में बाउंड्री किया हुआ है जो कि ब्लू और ग्रे कलर मे है।

और मंदिल के सामने में ही एक बहुत बड़ा ही नदी है।

और इस दुकान के बगल में भी एक सीढ़ी है।